ये यहाँ पे लगता है यहाँ पे बहुत सारे मक्के जो कि यहाँ पे रखे हुए है लगता है ये मक्के खराब हो चुके है तभी इनको यहाँ पे जो की फेंक दिया गया है।